औड़ दीवाल है पीछे कुछ किसी चीज से रस्सी से बांधा हुआ है औड़ उजला-सा --

एक नदी है। नदी के बगल में पुल है। पुल के नीचे बड़ा सा लोहा सा एक लगा हुआ है। सामने पहाड़ है। सूरज है और बादल है और एक रेलिंग है और अ पुल का काम हो रहा है और सामने टावर है और अ नीचे नदी है।

एक गाँव है गाँव में एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है और सभी बच्चो को बिस्कुट बांट रहा बगल में गोबर है।

गोबर का ठो-ठोका हुआ है और अ ई पेड़ है ताड़ का बगल में मोबाईल चल रहा है। उजल शर्ट में पेहेना का बगल में कुर्सी में बैठे है रहा है उसके पीछे बैनर टेंगा हुआ है। आउट --

और बगल में एक मशीन है और टांगना पर कपड़ा पसारा हुआ है सामने टंकी है टंकी टंकी के नीचे एक घर है।

ए झोपड़ी सब बना हुआ है अ नाव का मालिक चला रहा है।

एक घर है घर पर भारतीय स्टेट बैंक है और बादल है कौआ है पेड़ है पोल है और नीचे घर है और --